गुम्मद है जिसके बीच में एक बड़ी सारी घड़ी रखी हुई हैं। एक बड़ा बैनर है जिसमें एक लड़के का पोस्टर लगा हुआ है ऊपर एक घोड़ा है।

शादी हॉल के बाहर का जो पीक है जहाँ पे एक वाच मेन अंकल एक कुर्सी पर बैठे है नीचे ग्रीन कार्पेट बिछे हुए--

जो की खड़ा है पैरों मे शूज पहना है | सर्दी का टाइम है तो जरकिन पहना है गले में टाई बंधी हुई है ऊपर बहुत सारी लोहे की रेलिंगस लगी हुई है ।

फूलों से वो सजा हुआ है आस पास व्हाइट और रेड कलर के कर्टनस लगे हुए है बहुत सारे आदमी है ।

एक कैम्प लगा हुआ है जहाँ पे बहुत सारे लोग है| आस पास की दिवारे है| एक ए_सी लगा हुआ है कुछ नर्सेस है| कुछ डॉक्टर है।

मंडली में काम चल रहा है| जो की मूर्तियों का है कुछ बता रहै हैं राधा कृष्णा जिसमें राम लक्ष्मण हैं।

अ पीछे शिवू की मूर्ति बनी हुई है पार्वती की मूर्ति है अ हनुमान की मूर्ति है आस-पास बोहोत सारी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं कुछ पहाड़ जैसा है।

आदमी जो की झुका हुआ है| उसके सफ़ेद बाल है जो की पैरों में चप्पल पहना है नीचे बहुत सारी ईंटें कलर वगेरा पडा हुआ है हरे कलर का पथरीली ज़मीन है।

देर के बाहर बहुत सारे लोग बैठे हैं अ हरी मैट बिछी हुई है औरतें वहीं अपना सामान रख के बैठी हुई हैं एक आदमी है जो पिस्ता कलर का कुर्ता है उसके साथ एक औरत बैठी है।

अ एक झोपड़ी जैसा बना है जिसके ऊपर रेड कलर का झंडा है साइड से बहुत सारे झंडे दिख रहे--

दूकान है जिसके ऊपर चदरे डली हुई है बाहर बैनर लिखा है अपना फैमिली मीट हाउस।